पोस्टर भी लगे हुए उसके साइड में देख सकते हैं एक राशन दुकान हैं ये जोकर हैं बहुत ही अच्छा बनाया गया हैं देख सकते हैं तरह के कुर्सी यहाँ पर हैं दो चार्ज

तार बगैरा यहाँ पर भी आए हुए है हरा-भरा सीन भी आए हुए है बहुत सारा यहाँ पर पेड़ सब बहुत खुश है यहाँ पर पेड़ कए फल दम पके हैं।